ए_सी लगे है सीलिंग बल्ब जल रहे जो की छे सीलिंग बल्ब है कैमराज लगे हुए हैं।

क्रीम कलर की सीलिंग है रेड कल रेड और ब्लैक में सोफास है।

यह एक ग्राउंड हैं जिसके कुछ दूरी पर एक घर है जहां पर एक सिंटेक्स दिखाई ब्लू कलर की।

बिल्डिंग है यहां पर एक ऑटो भी खड़े हैं एक कार खड़े हैं।

यह ऑफिस है जहां पर शीशा से सारा ढका हुआ है तीन चेयर रखी हुई है।

कुछ चेयर में क्रॉस का साइन बना हुआ है और यहाँ पर शीशा का गेट भी है और जिसमें ड्रॉइंग बनी हुई है।

यह एक बैंक है बैंक का नाम यूनियन बैंक --

तीन तरह के पेड़ है एक डार्क ग्रीन एक लाइट ग्रीन और बहुत सारी सूखे पत्ते गिरे हुई हैं।

यहां पे टाटा स्काई की दो छतरियां रखी हुई हैं।

चार आदमी आए हैं जो एक खड़े हैं दो बैठे हुए हैं।

प्लास्टिक है जिसमें साइकल लिखा हुआ है।

एक पैसेंजर पर्पल कलर की शर्ट पहने हुए हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।

बहुत सारी स्कूटी लगी हुई है बाइक लगे हुए है सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है।

एक टेबल है जो कि ब्राउन कलर की है जिसमें प्लस का साइन बना हुआ है।

ए_सी लगी हुई है सीलिंग बोर्ड लगी हुई है जिसमें मरकरी भी लगी हुई है।

यह व्हाइट कलर की बिल्डिंग है यहां पर बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं और यहां पर दो पेड़ है।

एक गेट भी है जो की शीशा की है इंडिया की ग्रोसरी है।

एक गमला है जिसमें पौधा लगा हुआ है ।

यहां पर एक बोरा भी रखा हुआ है।

मैट है चादर है साड़ी है ब्लाउज है ब्लैंकेट है एक आदमी बैठा हुआ है जो कि टोपी पहना हुआ है।

ये लाइब्रेरी में वाइट कलर की सीलिंग है फैन है कैमराज लगे हुए हैं बहुत सारे किताब हैं।